बास है बाथरूम है खपड़ा है।

पहाड़ है जरना है पानी हे घास हे ग्रेच हे।

लोहा है दिवाल है बालू है टेंट है बिल्डिंग है दिवाल है लोहा से घेरल बोंडरी है।